यहाँ व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहें हैं ।

रेल की पटरियाँ दिखाई दें रहीं हैं।

इस चित्र में एक बड़े सी --

जहाँ पर प्रतीक्षा कक्ष में रखी कुर्सियाँ दिखाई दे रहीं हैं।

इस चित्र मैनिर्माण कार्य दिखाई दे रहा है।